एक जेलर का खड़ा हुआ दिख रहा है कचरा पड़ा हुआ दिख रहा है बहुत सारा नट पानी की दूकान दिख रही है ।

टंकी किराए की दिख रही है नीले कलर की डेविल में पीला कलर दिख रहा है ब्लैक कलर दिख रहा है रोड पर ब्लैक व्हाइट कलर दिख रहा है ब्लैक कलर दिख रहा है बादल में --

बलून लगी हुई दिख रहे हैं पीले कलर के ब्लैक कलर के। उसमें पीले कलर की लड़ी लटकी हुई दिख रही। पी क्रीम कलर की दिख --

खिड़कियां दिख रही है ऊपर बल्ब में ग्रीन कलर पिंक कलर ब्लैक कलर की लाइटें दिख रही है।

साइड में एक फोटो लगा हुआ दिख रहा है ऊपर में पेड़े दिख रहे है देविल में क्रीम कलर ग्रीन कलर दिख रहा है दूकान का नाम।

खेलने कूदने वाले सामान दिख रहा है इस सब में पट्टी शाइनिंग दिख रहा है। पानी दिख रहा है। ग्रीन कलर क्रीम कलर दिख रहा है। ब्लैक कलर की कुछ चबुतरे वगेरह दिख रहे है।

ऑरेंज कलर ब्लैक कलर पिंक कलर ग्रीन कलर दिख रहा है मकान में व्हाइट कलर दिख रहा है खम्भे रखे हुए --

सब्जी मंडी दिख रही है बोरियाँ रखी हुई दिख रही हैं झोले वगेरह दिख रहे हैं गाडियाँ बहुत सारे जेंट्स लेडीजे दिख रहे है ।

बोटले दिख रही कटिंग वाली दूकान है। एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा है। टॉवल टंगा हुआ दिख रहा है। और सारे कांच दिख रहा है। माला ऑरेंज कलर की पर्दे दिख रहे है।

रेत के ढ़ेर के पास में एक जेंट्स खड़ी हुई देख रहा है। बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। मकान दिख रहे। पेड़-पौधे दिख --